यहाँ पर देखिये आपको बोहोत सारे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। पिंक कलर की यहाँ बोहोत भीड़ लगी है। देखिये ये बोहोत अच्छी तरह से सजाया गया है। यहाँ पे देखिये सबसे ऊपर दो आपको शेर भी दिखाई देंगे। ऊपर गोल्डन कलर के हा ये पोस्टर भी लगा हुआ है ।

यहाँ पर देखिये आपको एक शॉप दिखाई पड़ रही है। शॉप बहुत ही बड़ी है। देखिये शॉप के बाहर कुछ पोस्टर दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे सामान रखा हुआ है ब्लॉक में और देखिये यहाँ पे कुछ पंखा दिखाई पड़ रहा होगा। ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉक्सेस रखे होंगे।

यहाँ पर देखिये आपको बहुत सारे अंकल आंटी दिखाई पड़ रहे है। कुछ पेड़ भी लगे है लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पे देखिये राइट हैंड साइड पे आपको पोस्टर भी दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ यहाँ बिजली की तार भी जाती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिये अंकल के हाथ में एक ढोलक है बोहोत लम्बा चौड़ा ।

यहाँ पर देखिए आपको एक क्यारी दिखाई पद रही है गमले में कुछ फुल दिखाई पर रहा है पेड़ दिखाई पर रहा है छोटा सा यहाँ पे देखिए सामने आपको एक मूर्ति दिखाई पर रही है और उसका कलर देखिए गोल्डन कलर का है।

यहाँ पर देखिये आपको बहुत अ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिये हरे कलर की महती बिची हुई हैं। यहाँ पे चप्पल दिखाई पड़ रही होंगी यहाँ पे और यहाँ पे आंटी लोग बैठी हुई है। कुछ अंकल लोग भी हैं।

यहाँ पर देखिये छत पर तीन आंटी लोग हैं। ये इन के पास मेट हैं। तीनो एक एक मेट पे खड़ी हैं। यहाँ पे देखिए अ बॉर्डर जो बाउंड्री के ऊपर कुछ गमले रखके देखिये यहा पे गमले रखे हुए है हरे और ब्लैक कलर के।

यहाँ पर देखिए आपको दो कार दिखाई पड़ी है एक कार व्हाइट कलर की एक कार ग्रे कलर की देखिये जो दीवाल का कलर है वो व्हॉइट कलर का देखिए यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है और नीचे कुछ सामान ज़मीने रखा हुआ है और बहुत सारे अंकल लोग--

यहाँ पर देखिए आपको एक शॉप दिखाई पर पड़रही है। देखिए शॉप में बहुत सारा सामान टंगा हुआ है। यहाँ पे फूल की मालाऐं टंगी हुई है। सबसे ऊपर देखिएगा यहाँ पर ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है। इसके निचे की देखिये आपको ब्लैक कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है। यहाँ में बहोत भीड़ लगी हुई है।

यहाँ पर देखिए आपको एक इ-रिक्शा दिखाई पर देखिए इ-रिक्शे पे कुछ मशीन रखी हुई। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शाप दिखाई पर रही है। देखिए यहाँ पे शाप ह । यहाँ पे बोई रखी बहुत सारी गाडी बनी हुई है और यहाँ पे एक बाइक बिक दो बाइक --